बिल्डिंग है बिल्डिंग के पास एक छोटा सा मंदिर है मंदिर के पास --

शटर है शटर के साइड में दो और शटर बंद हैं शटर के बाहर बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पर बत्तख है वह पानी में तैर रही हैं।

एक लड़की जीन्स पहने हुए है-है-है-है-है लोग म-म-म-म नील कलर की टीशर्ट पहने हुए हैं-हैं-हैं-हैं कमरे में लाल रंग पुता --

एक नदी है नदी पर एक बड़ा सा पुल बना हुआ है जो येल्लो-लो-लो-लो कलर का है।

सुंदर-सा बगीचा-सा दिखाई दे रहा है इसमें बड़ी-बड़ी चट्टानें दिखाई दे रही हैं एक पर चिड़िया बेठी दिखाई दे रही है बहोत सारे हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक गुलाबी है एक हरी है एक लाल है और साइड में कुछ कपडे दिखाई दे रहे है एक सफ़ेद कलर का पो पोटली दिखाई देइ।

साए इड में दो आदमी खड़े हुए हैं एक गाड़ी खड़ी हुई है।

कुछ ब्लैक एंड वाईट दिखाई दे रहा है कुछ रंगीन --

साइड में दो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं एक साइड सांप बना हुआ है एक साइड एक टैडी बना हुआ है कुछ पत्तियां दिखाई दे रही हैं ऊपर अ-अ-अ-लाइनें दिखाई दे रही।

और उसपर म म आदमी माल डाल रहा है और पीछे पिली मिट्टी है।